और दूसरा व्यक्ति हमारी तरफ ही देख रहा हैं कुछ शटर लगे हुए हैं यह मकान बहुत बड़ा हैं ऊपर नीला आकाश साफ़ दिखाई देता हैं।

ऊपर आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा हैं यह कच्ची पक्की ईंटो से बनी हुई हैं जिसका कलर सफ़ेद हैं जिसमे बहोत सारी खिड़कियाँ लगी हुई हैं सामने बालगनि जैसी भी कुछ बनी हुई हैं अंदर का गेट थोड़ा अंदर--

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है जो कि कच्चा है और जिसका पेंट लगभग अब निकल ही चुका है उसके नीचे काली काई लगी हुई है यह लाल कलर से पेंट किया हुआ है।

एक स्कूटी खड़ी हैं अंदर बहोत सारे स्कूटर खड़े हुए हैं सामने कच्ची मिट्टी हैं जिस पे गाड़ियों के चलने के निशान बने हुए हैं कुछ छोटी-मोटी घासे लगी हुई हैं।

और सभी दरवाजे अभी बंद हैं और सामने जाने के लिए पाइप की कुछ बनाई गई हैं जिसमे से होकर के लोग द्वार को क्रॉस करेंगे या फिर अंदर आयें--

वहाँ पे मकान के पास कुछ लोग लाइन लगा के भी खड़े हैं एक छोटी सी कार खड़ी हैं ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा हैं अगल-बगल कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं नीचे हरी घास दिखाई दे रही हैं कुछ स्थान खाली--

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रही हैं जो कि बहोत बड़ी हैं नीचे बहोत सारे टेम्पू और कार खड़ी हुई हैं कुछ ए सी. भी लगी हुई हैं ऊपर जालीदार रेलिंग लगाई गयी हैं छत पर से आसमान पूरा साफ़ देखा जा सकता हैं।

यह जिम करने की कुछ समाने रखी गई हैं सामने ही कुछ लोगो के पोस्टर लगाए गए हैं और नीचे कुछ कारपेट बिछी हुई हैं ऊपर--

ये एक गेट खुली हुई हैं तथा दूसरी आधी बंद हैं ऊपर एक तार जाती हुई दिखाई दे रही हैं यह पूरे घर का कलर पीला कलर का हैं ऊपर नीला आकाश हैं।